व्यक्ति भी नजर आ रहा है और विद्युत के खंभे भी नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में मुझे एक बड़ी सी मॉल नजर आ रही है।

तथा अन्य दुकाने दिखाई दे रही है।

तथा तस्वीरें भी दिखाई दे रहे हैं एवं स्तंभ भी दिखाई दे रहे हैं।

एवं महिलाएं एवं पुरुष दिख रहे हैं।

जंगली झाड़ और पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

एवं विद्युत का बड़ा सा खंभा भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में मुझे एक कारखाना नजर आ रहा है।

एवं पेड़ के नीचे लाल और सफेद कलर भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।